सामने की तरफ मुझे एक लड़का नजर आ रहा है लड़के के आस पास मुझे कुछ जाली नजर आयी जाली के ऊपर की तरफ मुझे एक लोहे का बना हुआ एक।

उसके ऊपर काफी सारे लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं सामने की तरफ़ स्टेज के ऊपर भी काफी सारे लोग नज़र आ रहे हैं और मुझे स्टेज की सजावट काफी अच्छी नज़र आ रही हैं ऊपर की तरफ़ रात का मौसम नज़र आ रहा हैं सामने की तरफ़ मुझे कुछ लाइट जलती हुई नज़र आ रही हैं सामने की तरफ़ मुझे--

और का नजारा व्हाइट कलर का उसके पास नील कार्बन नजर अा रहा हैं और उपर की तरफ मौसम काफी अच्छा नजर आ रहा हैं उपर की तरफ काफी मुझे --